मछली रखा हुआ हैं एक गो--

एक बोरा देख रहा है बोरक बोरा के ऊपर--

सामान हैं मूर्ति को स्पर्श करते हुए प्रणाम कर रहे--